और पीछे कुछ धुंधला-धुंधला बीच में दिख रहा है इसमें।

यहाँ पर एक थ्री व्हीलर मैंजिक --

दो लिप्टस का पेड़ भी लगा हुआ हैं। पीछे लाइटिंग भी लाइटिंग की ओर स्लाइड लगी हुई है।

यहाँ पर देवताओं की रैली निकली हुई है। बहुत सारा भीड़ है यहाँ पे। कई लोग छत के ऊपर से चढ़ के देख रहे हैं। छत पे डेकोरेशन का काम भी चालू है।

आयल का गोडाउन है।

बगल में एक दो लोग खड़े भी हैं।

यहाँ पर लोक सेवा केंद्र बनाया गया है जहाँ पर ग्राहकों का आसानी से लेनदेन हो जाता है।

जिससे किसी को हानि न पोहचे ।

उसकर किनारे पर पठार जैसा दिख रहा है जो कि सूखा हो गया है अभी।

यह गंगा महल घाट का स्थान है।

यह राधा कृष्ण फल भंडार है जहाँ पर फलों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है।

जोकि जहाज मे बैठने के लिए बोहोत ही उत्सुक हैं।

यहाँ पर बड़ी मूर्ति में महात्मा बुद्ध को बनाया गया है और छोटी-छोटी मूर्तियां भी अगल बगल में र --

यह किराने शॉप की दुकान है जिसमें ठन्डे की बोतल पानी की बोतल कुछ कुरकुरे की पैकिट --